ये तस्वीर किसी इमारत के बाहर की दिखाई दे रही है।

आसपास की चट्टानें और हरियाली दृश्य को और भी सुंदर बना रहे हैं यहां कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

जंगल में एक बड़ा सा झरना है बहोत बड़े बड़े पत्थर हैं जिसपे से पानी गिर रहा है।

यह तस्वीर किसी कपड़े की दुकान की है यह दुकान में सभी महिलाओं के कपड़े लगे हुए हैं।

यह तस्वीर किसी कराटे के क्लास की है।

क्लीनिक का नाम डॉक्टर राजेश पटेल है यह क्लीनिक एक्स रे और सोनोग्राफी जैसे सेवाएं देती है।

यह तस्वीर एक ट्रैक्टर शोरूम की है।

यह तस्वीर एक ऑफिस की लग रही है।

यह एक बड़ा सा मॉल है मॉल में अलग अलग कपड़े टंगे हुए है।

पास में ही कुछ लोग खड़े है और गाड़ियां भी नजर आ रही है दरवाजा बहोत ही सुंदर है।

यह तस्वीर किसी सोने की दुकान की है।

और दो आदमी गोनियां लेकर जा रहे हैं। गोडाउन में ड्रम रखे हैं।

स्टेज बना हुआ है जिस पर कारपेट बिछा हुआ है।

तीन बड़े बड़े पेड़ हैं पेड़ के पीछे बिल्डिंगे है।

गेट के बाहर एक सफेद रंग की कार खड़ी है।

हर फ्रिज के ऊपर उसे बनाने वाली कंपनी का नाम लिखा हुआ है।

दुकान के अंदर एक आदमी बैठा है और एक खड़ा है।

शोरूम का दरवाजा कांच का बना हुआ है शोरूम में बहोत सारे कपड़े लगे हुए हैं।

यह एक कारखाने की तस्वीर है कारखाना पत्रे का बना हुआ है।

ये तस्वीर किसी बड़े से पार्क की दिखाई दे रही है।

सीढ़ियां दिखाई दे रही है बैंक के बाहर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं एक आदमी दो साइकल के पास खड़ा हुआ है।

ये एक बड़ा सा झरना है झरने का पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरना है।

इस तस्वीर में एक फल और सब्जियों की दुकान लग रही है।

यह तस्वीर किसी सरकारी दफ्तर की है दफ्तर का रंग नीले और सफेद रंग का है।